इस फोटो में हम कुछ लोगों को देख सकते हैं उनके पीछे एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में दो बोर्ड लगे हुए हैं।

ये रुम का फ्लोर टाइल्स से बना हुआ है।

रूम के दूसरे तरफ हम एक खिड़की देख सकते हैं।

इसके अंदर दो बेड लगे हुए हैं।

यहां पर हम एक इंसान को देख सकते हैं जो की मछली बेच रहा है।

इन लोगों के पीछे एक बांध से बना हुआ एक घर है।

इस फोटो में हम दो बाइक देख सकते हैं बाइक के सामने छोटा सा टेंट लगा हुआ है।

इस बिल्डिंग के बाहर एक बेंच लगा हुआ है।

घर के सामने एक लाल रंग की थार पार्किंग किया हुआ है।

ये बागीचा काफी सुंदर दिख रहा है।

यहां पर हमे कुछ लोग पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर हम डूबता हुआ सूरज देख सकते हैं।

इस फोटो में हम दो बड़े बड़े चिड़िया देख सकते हैं।